सभी प्रकार के ऑपरेशन तथा --

बर्थडे शादी के सालगिरह मै करते है।

जिसमें बहुत सारे बोड़ी - बड़ी --

इस मशीन से एक-एक धागे को --

लोग फोटो खींचा रहे हैं।

टी.वी. आदि और भी बहोत सारी --

रोजगार का अवसर प्राप्त कर सके।

यहाँ पर फीटर एवं इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है जोकि दो साल के लिए है ।

यह कॉलेज दो मंजिला हैं।

सेलिंग फैन भी लगा हुआ है।

चिल्ड्रन स्कूल का --

नौ बजे तक खुली रहती है।